सेल्फी लेना आजकल के नव युवकों का शौक हो चुका है।

विंडो में कूलर भी लगा है।

घर पहाड़ से घिरा हुआ है।

बच्चों के खेल कूदने के लिए अलग अलग संरचनाये बनी हुई हैं।

नई नई घांस लगाई गई है।